इस चित्र में चट्टान दिख रही है पानी दिख रहे है झाड़ियाँ दिख रही है।

इस चित्र मे गाड़ी दिख रही है पत्थर दिख रहे है पंखा दिख रहा है खिड़कियां दिख रही है लाइट दिख रही है दरवाजा दिख रहा है।

इस चित्र में पेड़ दिख रहे है आदमी दिख रहा है घर दिख रहे है।

इस चित्र मे पानी दिख रहा है एक नाव दिख रही है एक जमीन दिख रही है पेड़ दिख रहे है घर दिख रहे है।

अ खंबा दिख रहा है औरत दिख रही है सडक दिख रही है जा छत कि जाली दिख रही है।

लकड़ी का सामान दिख रहा है ज़मीं दिख रही है।

इस चित्र मे घर दिख रहा है जाली दिख रही हैं कांच कि खिडकी दिख रही है।

इस चित्र मे आदमी दिख रहे है जालियाँ दिख रही है टेबल दिख रही है बोर्ड दिख रहा है खिडकी दिख रही है।

ड्रम दिख रहे है डलियाए दिख रही है घर दिख रहा है।

इस चित्र मे गाड़िया दिख रही है बस दिख रही है पेड़ दिख रहे है घर दिख रहा है पानी दिख रहा है मिट्टी दिख रही है खिड़किया दिख रही है।